जिस पर तोल रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है ये एक मशीन है जिससे वजन नापते हैं और देखते हैं कितना सामान तोलना है कितना नहीं तोलना उनने अपनी लाइट भी लगा रखी है उसके लिए।

यह एक एटीएम मशीन होती है बैंक की ये कैनरा बैंक की एटीएम मशीन है।

ये एक भैइया का मकान बन रहा है। हम देख पा रहे है एक मकान है जो की उस पे ईंटे लगाई हैं।

उनको काफी अच्छी और सुंदर तरीके से सजा कर रखा गया है और लाइटें भी बहुत अच्छी है | बेडशीट बहुत अच्छी धुली हुई रखी हुई है बेड पे बहुत ही सुंदर।

चित्र है। मेरे ख्याल से यह एल.आई.सी. का है क्योंकि कि एल.आई.सी. में ही में ही ऐसे --

एक कॉलेज का हॉस्टल कॉलेज में जो हॉस्टल होते है बी-टेक एम-टेक के लिए जो बच्चे रहते हैं तो वहां पर हॉस्टल होते हैं उस होस्टल का चित्र लग रहा है।

इसलिए खेलना भी ज़रूरी होता है बच्चों के लिए बहोत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब वो खेलेंगे तब वो बड़े होंगे उनका शरीर बड़ा होगा।

अपने मम्मी पापा के साथ दीदी के साथ भैया के साथ छोटा भाई छोटे बहन के साथ और बच्चे काफ़ी मज़ा करते हैं पार्क होते हैं झूले होते हैं पानी होता है वहाॅं पे तैरते हैं स्वमिंनिंग करते हैं काफी अच्छा --